काफी बहुत बड़ा सा ग्राउंड टाइप का दिखाया जा रहा है पौधे-वौधे जो डिजाइनदार कटिंग कर दिए गए हैं और कुछ पत्थर-वत्थर हैं।

और टीवी उभी भी दिखाई जा रही है गेट है नीचे मार्बल का काम है एक पैर पछना.--

एक मंदिर दिखाया जा रहा है। मंदिर पर बहोत सारे सब मंदिर है और बाहर पर गेट है पोल का और--

पोस्टर है पोस्टर पर कुछ-कुछ लिखा गया है घर पर कुछ--

बहुत बड़ी सी घड़ी है गुरु नानक जी की फोटो वोटो है नीचे फर्श पर मारवल के कामवाम किए गए हैं ब्लू ब्लू कलर के हैं एक दरवाजे--

एक हॉस्पिटल दिखाया जा रहा है जिसके बाहर पर बोर्ड है बोर्ड पर लिखा गया तिरुपति मल्टीप्लेसिकल हॉस्पिटल --

एक गेट दिखाई जा रही सीढ़ियां दिखाई जा रही है सीढ़ियों के पास गमले गमले में बहुत सारे पौधे दो-तीन आदमी खड़े--

एक फोन का दुकान टाईप का दिखाया जा रहा है। जिसके बाहर पर बोर्ड है। बोर्ड पर लिखा गया है फोर जी । अंदर पर बहुत सारे सामान रखे गए हैं। कंप्यूटर रखा गया है।

ई पूछना टाइप का दिया गया है बाहर पर येलो कलर कर दिए गए हैं लाइट्स वॉइट्स दिए गए हैं बहोत सारे तार वार दिखाए जा रहे हैं एक गमला है।

रोड टाइप के बिछाए गए हैं मट्टी-वट्टी है पेड़-वेड़ है छोटे-छोटे पौधे हैं खिड़कियां हैं खिड़कियों पर--

बर्तन बर्तन है और ड्रम वरम रखे गए हैं एक आदमी है कढ़ाई पे कुछ कर रहा है लोहे के --

मशीन पर तारवार लिखे गए हैं बहुत कुछ लिखे गए हैं उसमें रेड कलर पर है वाइट कलर पर है ब्लू कलर पर कर दिए गए पोल है पोल पर काफी तार है।

बहुत सारे फूल रूल है जो जो कि सजा उजा करके रखे गए हैं एक वो रेड कलर का गमला है एक आसमानी कलर का गमला है उसमें बहुत सारे फूल रूल है पत्ते वत्ते है।

हेलेडी लाइट्स दिखाई जा रही है बहुत सारे ग्लास ग्लास दिखाए जा रहे हैं पत्थर वत्थर भी दिखाए जा रहे हैं।

युको बैंक दिखाया गया है जिसके बाहर पर बोर्ड है जिस पर लिखा गया है यू को बैंक और बहुत सारे --

नीचे टेबल टाइप का बना दिया गया उस कांच के अंदर भी बहोत सारे बडे --

बोहोत सारे घर वर दिखाए जा रहे हैं जो की फ्लैट व्लैट टाइप के--

बना दिए गए उसमें बहुत सारे सामान विमान रखे गए हैं एक एसी का--

एक पानी का बोटल है नीचे पे पक्का उक्का किया गया है चेयर्स है टेबल है एक आदमी बैठा हुआ है।

उ कुनी पे घेर दिया गया है अंदर पे काँच का गेट टाइप का दिखाया गया है।

तो उस कुर्सियाँ खड़ी है बाहर पर कुछ ऑटो वोटो खड़े हैं।

एक टेबल टाइप का बना दिया गया है जिसमें बहुत सारे कपड़े उपड़े रखे गए हैं एक आदमी है जो कि उसमें बैठ कर के --

एक बाउंड्री दिखाया जा रहा है जोकि वाइट कलर पर है और पोल वोल है झण्डे वण्डे है वाइट कलर --

एक लड़का है जो कि माथे पर तीन चार क्लिप फ्लिप लगा कर के बैठा हुआ है बैगनी कलर पर है पिंक में है आसमानी में है।

एक घर को बनाते हुए दिखाया जा रहा है जिसमें बहुत सारे रेड वर्ड लगाए गए बहुत सारे आदमी आदमी को दिखाया गया जो कि हेल्मेट टेलमेट पहने--